लाल कलर के फूल लगे हैं और उसके पास की छादियां खड़े हैं और ये बहुत खूबसूरत लग रही है।

यहां पर एक सेलेक्ट सिटी वाक नजर आ रहा है और--

और वहां पर एक अ खिड़की शीशे की खिड़की लगी हुई है।

वाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पेंट पहनी हुई है और ये बहुत खूबसूरत लग रही है।